सामने में बहुत सारा कपड़े टंगे हो और स्टैचू टाइप रहता है वो भी है उसके बगल में और एक दुकान है।

साइड में बाउंड्री बहोत बड़ा है। पेड़ पौधे हैं पीछे बिल्डिंग्स भी है।

प्राइस लिस्ट में लिखा हुआ येलो कलर का ब्लू कलर का उसके बाद येलो कलर का --

साइकिल है कोई पैदल जा रहा है यहां पे स्टैचू भी है तीन ठो।

यहां पे लिख ही दिया है एफ_आई फिटनेस --

और देखिए क्या होने वाला है यहां पे अभी बहोत प्यारा नजारा है।

तलय लिखा हुआ है पर पूरा पढ़ा नहीं जा रहा है।

एक बहुत बड़ा हॉल है बहुत सारी चेयर पड़ी हुई हैं यहां पे टेबल चेयर है व्हाइट कलर का चेयर है ग्रीन कलर --

कितना सुंदर सा लग दिख रहा है और बहोत बड़ा दुकान भी--

आदमी खड़े हुए हैं दुकान में बहुत से आदमी कोई लेने के लिए आया--

पेड़ पौधे के नीचे पेड़ ने ऊपर में पेड़ की छाया है।

लोका बाजार है सिर्फ फ्रूट्स ही फ्रूट्स मिल रहे हैं यहां पे।

शायद दोपहर का नजारा लग रहा है कोई आदमी यहां--